स्पीकर्स के नीचे मुझे वहां ब्लू कलर के प्लास्टिक भी दिखाई दे रहा है।

फ्लावर्स के पीछे मुझे ब्राउन कलर के वॉल भी नजर आ रहा है।

मुझे यहां दो रेड चेयर भी दिखाई दे रहा है।

इस रूम के अंदर बहुत सारा फ्लावर्स डेकोरेशन करते हुए भी दिखाई दे रहा है।

वॉल में कुछ पिक्चर्स हैंग करते हुए भी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां स्टेट बैंक ए_टी_एम नजर आ रहा है।

मुझे वहाँ ऑर्रेंज कलर की वॉल पेंटिंग भी नजर आ--

इस दुकान में मुझे स्टील क्लासेस वाटर जग वगैरा दिखाई दे रहा है।

मुझे वहां एक इंसान बाइक पे भी दिखाई दे रहा है।

सामने वहाँ एक घर दिखाई दे रहा है।

यह फोन येलो कलर में है फूलों के सामने मुझे लोग भी नजर आ रहे हैं।

ऊंचे ऊंचे वाल्ट भी दिखायी दे रहा--

वाल में टी_वी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां एक पार्क नजर आ रहा है।

मुझे यहां एक प्रोग्राम में लोग बैठे हुए नजर आ रहे है।

स्टेज मे साउंड स्पीकर्स भी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां एक टिन रऊफ घर नजर आ रहा है।

इस गेट के बीचो बीच स्कूल बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।

एक इंसान अपने हाथों में कपड़े लेते हुए दिखाई दे रहा है।

मुझे वहां एक पंखा चलाता हुआ भी नजर आ रहा है।

इस मार्केट में मुझे इंसान लोग भी नजर आ रहा है।

सामने मुझे रखी मुर्गी भी दिखाई दे रहा है।

लड़की के पीछे मुझे रेड कलर की चेयर्स दिख रहे हैं।

बरांडा में मुझे चेयर्स भी नज़र आ रहे हैं।

मुझे वहाँ कलर की वॉल पेंटिंग भी नज़र आ रहा है।

बच्चे कुछ प्रॉजेक्ट वर्क करते हुए नजर आ रहा हैं।